इस चित्र में एक कुर्सी रखी दिखाई दे रही है जिसके पास एक छोटी सी टेबल भी रखी हुई है।

इस चित्र मै एक पहाड़ दिखाई दे रहा है पहाड़ पर जाने के रास्ते मै कुछ सीढ़ियाँ भी दिख रही है आस पास पेड़ भी लगे हुए है।